और कुछ लोड कर रहे है टैंकर में और डंपर में कुछ ले समान ले जा रहे है किस चीज का समान है वो मुझे नहीं है --

और एक मैडम जोकि हाथ पकड़े हुए खड़ी रुकी हुई है साइड में--

किसी फंक्शन की तैयारी में जैसे बजाए जा रहे हो--

बाइक दिखाई दे रही है जो की बहुत पुराना मॉडल लग रहा है।